तो आप लोग देख सकते है यहाँ पे नगरपालिका पार्क है।

और काफी सारे पेड़-पोधे हैं हरा भरा है देख सकते हैं काफी बड़ा भी है और बड़े-बड़े पेड़ हैं छोटे-छोटे पेड़ हैं।

तो आप खुद देख सकतें है यहाँ पे काफी बड़े चट्टान है और सामने काफ़ी सारे पत्थर हैं छोटे-छोटे वो --

और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। जॉब में और गेट का भी साइज़ काफी बड़ा है खिड़की का भी साइज़ काफी बड़ा है।

जहां पर देख सकते ये एक दिवाल है।

काफी रहा है देखने में और काफी बड़ा भी है दीवाल और अगल बगल का सीन भी बहुत अच्छा देखने में।

तो आप लोग देख सकत हैं यहाँ पे योगा क्लास हो रहा है।

और एक सर हैं जो इन्हें बता रहे हैं। काफी बड़ा रूम है और काफी सारे बच्चे हैं।

तो आप लोग यह देख सकते हैं ये एक रूम का फोटो है।

तो आप लोग यह सोचे यहाँ का बैकग्राउंड कितना अच्छा है।